एक बोर्ड पे माँ भगवती ऑनलाइन --

इस इमेज में हमे ए.टी.एम. नजर आ रहा है।

जो सफ़ेद कलर का है इस्पे केरियर पॉइंट नर्सिंग लिखा हुआ है।

वहाँ पे हमें रेलवे स्टेशन नजर आ रहे हैं।

पीछे के साइड एक एल.ई.डी. लगी हुई है।

यहाँ पे टू व्हीलर गाड़ी में पेट्रोल भड़ा जा रहा है।

कुछ लड़कियों के ऊपर के ऊपर के साइड वी टू फैशन स्टोर लिखा हुआ है।

ते मानसरोवर स्टेशनरी लिखा हुआ है।